एक गाड़ी भी है गाड़ी के ऊपर दो व्यक्ति खड़ा है।

यहां पे एक बोतल भी है और यहां पे दो बोर्ड है एक ब्लैक है एक वाइट है यहां पे एक खिड़की है।

होटल का दृश्य है होटल के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है सरना होटल ।

यह एक मैदान का दृश्य है जहां पर कई सारे गाय दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक आदमी भी है।

इन गाड़ियां भी लगाए गए हैं गाडियां का कलर व्हाइट है एवं यहां पर--

यहां पर दो बोर्ड भी है और दीवार भी है दीवार का कलर व्हाइट भी है।

यहां पे एक खिड़की है जो एल्यूमिनियम और कांच के द्वारा बनाया गया है।

और यहां पे कई सारे खिड़कियां भी है खिड़कियां लोहे एवं कांच के मदद से बनाए गए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है जो दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा है।

यहां पे बोन बाउंड्री भी दिया गया है बाउंड्री का कलर पीला और गुलाबी है। यहां पे--

एवं टेबल भी है एवं कई सारे व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

कई सारे पेड़ पौधे हैं यहां पे कई सारे गाड़ियां भी है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग के बाहर लिखा है डाल्टनगंज ।